जयराम गियर टायर्स की दुकान है जहां पर आये अपने टायर्स चेंज कराये--

मजा आ जाता है पहाड़ों में घूमने का आप भी जाए पहाड़ों में जाए कॉफ़ी पीए बहोत अच्छा ल--